ऊपर हमें दिखाई दे रहा है कि इसकी साइड में इधर उधर बहुत ही सारे पेड़ है और लोग यहां पर बहुत सारे खड़े हुए हैं।

और यहां पे जो है पिलर खड़े हुए हैं और एक आदमी यहां पर खड़ा हुआ--

इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक रोड है और इस रोड पे जो है मम जो सामने का जो है तो है कुछ खाली सा प --

इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि एक जगह है और यहां पे बहोत सारे जो है--